भाई लोग खड़ा है और अपना तेल डलवा रहे है और यह बहुत ही अच्छा ऐड आया हुआ है देख सकते हैं और

हेलो गाइस देख सकते हैं ये शादी विवाह का डेकोरेशन है और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगो को और जबरदस्त देख सकते है इसमें --

ये नदी बहुत ही लंबी और चौड़ी है और इस पे अभी पानी सूख गया देख सकते हैं और बहुत ही गहरा पानी था अभी नहीं है देख सकते हैं बहुत ही --

हेलो गाइस देख सकते हैं यह लाल कलर का पेंटिंग है और यह बहुत ही मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये स्कूल का --

हेलो गाइस देख सकते हैं ये हॉस्पिटल है और आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा बहुत ही अच्छा लुक दिखाई दे रहा होगा देख सकते हैं और इसमें बेड वगैरा लगा हुआ है |

हेलो गाइस देख सकते है यह बस स्टेशन है और काफी मस्त लुक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को देख सकते हैं ।